मुझे यहां पे योगा करते हुए मुझे काफी लेडीज दिख रही हैं।

मुझे यहां पे एक म्यूजिक शो होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है ।

मेरे को यहां पे लोकल का अपर साइड का भाग दिख रहा है जिसमें मेरे को छपरे दिख रहे हैं सिल्वर और ब्राउन कलर के।

मुझे एक यहां पे काफी प्लांट हाउस दिख रहा है जिसमें काफी अलग-अलग प्लांट्स पड़े हैं।

मजूर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं।

अप्पर साइड का नज़र आ रहा है जिसमें मुझे काफी वाइट और दूधिया कलर के पतरे नज़र आ रहे हैं और अपोजिट साइड में मुझे ।

मैं जज कर पा रही हूं कि मच्छी काफी ब्रॉडनेस छोटी बड़ी ग्रे दिख रही है।

एक एरिया है जिसमें एक बोर्ड पे लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज ।

लिख के पढ़ने वाली जो ट्रेन के बाहर घड़ी लगी होती है उसमें टाइम ।

मुझे यहां एक लोकल एरिया दिख रहा है महाराष्ट्र का ।

मुझे यहां पर तालाब नजर आ रहा है।

बाहर उस ऑफिस का इनोगरेशन करते हुए फ्लैग ।

ध्वज वंदन दी जा रही है।

मुझे यहां पे लोनावाला जैसा।

जरना नजर आ रहा है।

मोल नजर आ रहा है।

ड्रोवर्स स्टैंड बनाया गया है ।

जिसमें एक जेंस बाहर से।

मंदिर स्टाइल में चट्टान में बना के अलग-अलग लेडीज पूजाएं कर रही हैं।

मुझे यहां पे एक फायर स्टेशन दिखाई दे रहा है जिसमें ।

का बोर्ड लगा हुआ है रेड एंड ब्लू कलर में सिम्बोल में लगाया गया है।

हुआ है दो-तीन शॉप में अलग-अलग ।

और उनकी कोई प्रेयर चल रही है।

ग्रीनरीज में पेड़ ग्रास .

जिसमें सर और स्टूडेंट्स योगा करते हुए और करवाते हुए सर नज़र आ रहे हैं।